या फोटो मे मुजे एक बाइ दिखाई देरी है जोकी ब्लैक कलर की है और यहाँ पर टेबल बी लगी हुई है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुए दिखाई देरा है और एक मिकैनिक दिखाई देरा है।